और घर को बाहर में बहुत सारा पेड़ है सभी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में घर जैसा भी नीचे में दिखाई दे रहे हैं।

बनाना का पेड़ भी दिखाई दे रहे--

और बाहर में आदमी लोग भी दिखाई दे रहे है और आस पास में घर ये सब दिखाई दे रहे हैं।

और समने में एक सीढ़ी भी रखा हुआ है।

और अंदर में एक लड़की भी दिखाई दे रहे है।

यह एक टेबल का ऊपर में कप और फोन यह सब दिखाई दे रहे हैं।

इस घर को बाहर में फैन ये सब बना के रखा हुआ है।

और सामने सामने मे बहोत सारा पेड़ ये सब भी दिखाई दे रहे हैं।

और वहां पे कप ये सब दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर में एक टी_वी भी लगा के रखा हुआ है।

यह एक बच्चा सफेद कपड़ा पहन के दिखाई दे रहे हैं।

और जमीन में भी बहुत सारा कपड़ा लोग बांध के रखा हुआ है।

और पीछे में पर्दा ये सब लगा के रखा हुआ है।

और घर का ऊपर में एंटीना यह सब लगा के रखा हुआ है।

यह एक रास्ता दिखाई दे रहा हैं इस रस्ता के साइड में बाइक और गाड़ी ये सब दिखाई दे रहा है।